और छोटे बछड़े बहोत ही प्यारे लगते हैं ये गांव ये गाय एक काली कलर की गाय हैं एक सफेद कलर की गाय हैं और दो और काली कलर की गाय हैं जो की घास चर रही हैं बैठी कुछ खड़ी हुई हैं कुछ बैठी हुई --

ये देखिए ये तालाब है ये बहुत बड़ा तालाब है आप छब तालाब में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है उसके तालाब के बगल में --

साइड में ये इतना बड़ा किला बना बनके रखा हुआ ये देखिए कितना बड़ा किला है और बहुत ही सुन्दर किला लग रहा है जो बिहार में स्थित है उसके साइड में ये पेड़ है और तालाब के किनारे में ये मौसम बहुत अच्छा लग रहा है।

ये देखिए ये किसान हल जोत रहा है ये उसकी फसल कर रहा है ये देखिए दो बैल है जो कि इस किसान के साथ है।

यह राजा महारजाओं के जामने का महल है ये जोकि बिहार में स्थित है इसका कलर जा चुका है ये पत्थरों का बना हुआ है।

य ये जो दिख रहा है ये यहाँ का क्या है स्कूल कहां का बिहार का ये जो स्कूल है बैनर मे लिखा है हाई स्कूल .

यहाँ पे एक अच्छा सा ग्राउंड दिख रहा है हमें और ये इनकंप्लीट घर सा डला हुआ है जो भी है मकान है क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से ये लड़का एक साइकिल से जा रहा है उधर पे पहाड़ दिख रहा है पहाड़ के बीच का मैदान है।

ये देखिए ये जो हम को दिख रहा है काफी अच्छा नजारा है और जो कि यहा पे हरे भरे पेड़ पौधे है।

ये देखो ये जो हमको इंसान है जो की डिप्स लगाते हुए दिख रहा है जो यहां पे रोजाना सुबह-शाम शाम के टाइम आता होगा अपनी हाइट बढ़ाने के लिए।